एक सामने मंदिर है फूल लगे हुए है चरों तरफ चक्र दिख रहे है बड़ा सा ऊचा बुद्ध का मंदिर है काफी सरे लोग खड़े हुए है ।

ए.टी.एम मशीन दिख रही है एंड ए.टी.एम मशीन में कांच की दीवारे दिख रही है दिन का समय--

ये सामने कांच बिन्द दीवार में कांच लगा हुआ है घड़ी दिख रही है लाइट दिख रही है खम्भे लगे दिख रहे है।

इसमे से नीचे पानी आ रहा है पाइप से अंदर जाली दिख रही है बैठने की कुर्सियां दिख रही है फर्श दिख रहा है ।

बच्चो के खेलने के लिए झूले लगे हुए है आ स्लाइडिंग जुले है लाइटिंग्स दिख रही है तुब्लैट्स दिख रही है काफी सारे लोग दिख रहे है।